और ढेर सारा बंडल रखा हुआ प्लास्टिक का।

ये छोटा-सा वन लग रहा है वन में एक हिरन खड़ी है वृक्ष के नीचे।

ये किसी ऊँचा स्थान पे --

हमको मेरे ख्याल से लगता है ये विष्णु जी का प्रतिमा है और पहाड़ के ऊँचा स्थान --

ये किसी मॉल का स्थान लग रहा है जिसमे ढेर सारा कपड़ा अलमीरा मे सजा हुआ है और ऊपर --